यह सब्जी दुकान फल दुकान है जो केले बेच रहे है पत्ता गोभी बेच रहे है टमाटर बेच रहे है एक आदमी बेग लेके खड़ा है ।

यह होटल गेटवे कर्नाटका हैं काफी नीचे से लिया गया हैं ऊपर दो आदमी लोग जा रहे हैं।

लोग चल रहे है अपना एन्जॉय कर रहे हैं।

ये सोनपुर का मेला जहाँ मेला लगा हुआ।